एक इस्कूल है। इस्कूल में बोहोत सारे बच्चे आये हुए हैं। यहाँ पे बोहोत सारी लड़कियाँ इस्कूल में बैठके --

राखी बना रही है। यहाँ पे राखी बनाने के लिए सिखाया जा रहा है। यहाँ पे बोहोत सारे ग्लूगन कैंची बोहोत सारे सामान --

यहाँ पे लेबर सब गिट्टी बालू सीमेंट मिला के --

एक यहाँ पे बालू गिराया गया है। बोहोत सारे मिट्टी हैं। यहाँ पे कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं बगल में। यहाँ पे दिखने में काफी हरा भरा --

नदी है। नदी बोहोत चौड़ी है। इसमें बोहोत सारे नाव चला रहे हैं। बोहोत सारे आदमी बैठे हुए हैं। बोहोत सारे लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए हैं।

यहाँ पे बड़े-बड़े पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं। काफी सारा नदी में पानी भरा हुआ है। बोहोत सारे लेडिज़ जेन्स यहाँ पे घूमने के लिए आये हुए हैं। यहाँ पे लोगों की भीड़ लगी हुए है।

यहाँ पे बहुत सारा पानी में गजली जमा हुआ है। यहाँ पे लोग नहाने के लिए आये हुए हैं। यहाँ पे देखने में --